यहां पर मुझे एक रोज है जो दिखाई दे रहा है जो थोड़े काले और ग्रे कलर में बहुत सारे कार है जो ग्रे और--

जो लगे हुए हैं बहुत सारे बोरे हैं जो दिखाई दे रहे --

और चक्का है जो बड़े-बड़े दिखाई दे रहे एक आदमी है जो आसमानी रंग का कपड़ा पहना है।

जो लाइट है ऊपर आसमान है जो पर्पल कलर का है।

एक हाथ है उसमें एक कटोरा है जो थर्माकॉल का उसमें चाट है थोड़ा प्याज है थोड़ा सेव है।

और जो नीचे का है उसमें कुछ फॉर्सलाइक काम है जो डब्बे जैसा बना हुआ है नीचे बहुत सारे जंगले हैं।

और ऊपर में कुछ केतली है जो रखी गई है और प्लेट है जो रखे गए है। खिड़की है जो साइड में दिखाई दे रहा है जो कांच का है।